आगे हम देख सकते हैं एक एक्सिस ए_टी_एम बैंक का ए_टी_एम मशीन है।

यहां हम देख सकते हैं कि एक--

यहां एक रेस्टोरेंट प्रतीत होता है जहां पे आगे दो--